यंहा पर हमें टी_वी _एस का शोरूम दिख रहा है यंहा पे काफी सारी गाड़िया भी दिख रही है यहाँ --

यँहा पे हमें एक मैदान दिख रहा है। मैदान में काफी सारी कारे भी खड़ी हुई है। बगल में ही एक ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है।

यहाँ पर रखी हुई तीन चार बाइके भी दिख रही हैं पीछे बने हुए कुछ पेड़ व मकान भी दिख रहे हैं यहाँ पे छोटे पौधे भी दिख रहे हैं।